ओ ओ कुछ लाइट जल रही है सामने एक बड़ी वाली क्रेन खड़ी नजर आ रही है जो पीले कलर मे है और धूप हल्की निकली हुई--

यह एक पिली सी दिवार बिल्डिंग की दीवाल दिखी लिखी दिख रही है और यह पे पोस्ट ऑफिस का बोर्ड नजर--

बहुत बड़ा गेट है दो ही साइड खुलता हैऔर अंदर मे कुछ व्यक्ति दिख है और आउट साइड मे कुछ वृक्ष हरे कलर के दिखाई दे रहे है और ये हल्की धूप निकली हुई है दिन का समय है।

और यह धूप निकली हुई है साइड में एक और पौधा नजर आ रहा है यह दिन का: समय है ।

और उसमें कुछ गेरू कलर पुता हुआ है और कुछ सफेद खंभे लगे हुए हैं और कुछ छोटा सा वहां सफेद कलर का गेट लगा हुआ है उसमें हरी हरी घास दिखाई दे रही--